यहाँ ठीक सामने एक व्यक्ति है व्यक्ति इधर सामने देख रहा है व्यक्ति के पीछे लोहे ची की ग्रिल लगी हुई है ग्रिल पर ढका हुआ है कुछ ग्रिल के ठीक सामने पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर दूर तक हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं घास का मैदान भी दिखाई दे रहा है सड़क भी दिखाई--

यहाँ एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के घर के सामने गाय खड़ी है गाय ब्लैक कलर की है नीचे की जमीन ईंट से बनी हुई है।

रोड के ठीक सामने एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है गेट दोनों तरफ शे लोहे के गेट लगे हुए हैं जो गेट --

इस सड़क पे एक व्यक्ति जा रहा है व्यक्ति के हाथ में थैले भी हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग के ठीक सामने बस भी खड़ी हुई है बस कलर में है व कुछ यात्री उतर रहे हैं कुछ चढ़ रहे हैं ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ से व्हाइट कलर से बनी हुई है। ये स्कूल भी हो सकता है। बच्चों का प्ले स्कूल भी हो सकता है।

यहाँ कुछ लोग खड़े हो कुल लोगों के पीछे सीढ़ी नु दिखाई दे रही है सीढ़ी के ठीक ऊपर बोर्ड लगा है बोर्ड पर दो बस का चित्र बना है उस पे गंगा टूरिस्ट इंडिया पी_वी_टी लिमिटेड लिखा गया है ठीक उसके पीछे भी कुछ दिख रहा है।

यह मंदिर है मंदिर में बहुत सारे प्रतिमाएँं रखी गई है और सामने फोटोज भी रखी गई हैं उनके सामने पुजारी जी पूजा कर रहे हैं पूजा करने वाले सभी बर्तन रखे गए हैं दीपक भी जल रहा है ऊपर भी छत है दीवाल के सहारे सभी लोग रखे गए हैं।

पौधे भी हैं पौ पौधे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर बैठक गाँंव में आपका स्वागत है लिखा गया है विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगाए--

बोर्ड लगा बोर्ड पर इंडो अमेरिकन स्कूल लिखा गया गेट के ठीक सामने एक--

पाइप के सहारे बहुत शारे सामान टांगे गए हैं जो प्लास्टिक के थैलिया में भी है नीचे भी सामान रैक पर सजाकर रखे गए हैं नीचे मेज पर भी सामान रखे गए हैं डब्बे में सामान रखे गए हैं ऊपर फैन भी लगा हुआ है।

सामने भी दीवाल है दीवाल के ऊपर बिजली के तार लटक रहे हैं चारों तरफ से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं रंग-बिरंगी दिवाले भी हैं।

भगवान की हो सकती है गेट के ठीक बगल में भी कुछ डिज़ाइन कलाकृतियाँं बनाई गई है ऊपर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के किनारे बहुत सारे गमले रखे गए हैं गमले में विभिन्न प्रकार के पौधे रखे गए हैं पौधे के ठीक बगल में गाड़ी खड़ी है पौधे के ठीक पीछे बहुत शारे बोर्ड लगे बोर्ड पे तमाम--

दीवार के सहारे गुलजस्ता भी रखा गया है चारों तरफ से लाइट भी जल रही है ऊपर से भी लाइट --

यह कमरा रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया है जहां बैलून लगा हुआ कांच की दीवाल भी है कांच की दीवाल के ऊपर कुछ रखा गया है चारों दूसरी दीवाल में बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं फोटो रंग बिरंगे हैं नीचे जमीन पे के सहारे भी कुछ फोटो रखे गए हैं।

यह कपड़ों का शोरूम है शोरूम के बाहर दो प्रतिमा रखी गई प्रतिमा को शर्ट पैंट पहनाया गया है शोर शोरूम के शोरूम में काँच की दीवार लगी हुई है काउंटर पे काँच लगी हुई है।

यह कमरा है कमरे में जिम करने की मशीन रखी गई है बहुत अनेक प्रकार की मशीन है कमरे के अंदर भी खिड़की है खिड़की के अंदर भी दिख रहा है बहुत सारी मशीन रखी गई है ऊपर बोर्ड लगा है बोर्ड पे कुछ लिखा गया है यहाँ फर्श पे ग्रीन कलर की कालीन भी बिछाई गई है।

यह अगल-बगल कुछ भी नहीं है यहाँ केवल प प्लेट है प्लेट में पराठे रहे--

सामने खाली मैदान है मैदान के ठीक बगल में अ--

यहां रामलीला के दृश्य का मंचन हो रहा है दृश्य को देखने के लिए बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं चारों तरफ से नीले रंग की पर्दा लगी है ऊपर से भी पर्दा लगा हुआ है सामने भी कुछ--

सामने खाली पड़ा मैदान है मैदान के ठीक सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग चारों तरफ शे --

यह पार्क है पार्क के दोनों तरफ से बहुत बड़ी-बड़ी ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही है पार्क के चारों तरफ से अ बहुत बड़े-बड़े हरे पेड़ भरे पेड़ पौधे हैं चारों तरफ से यहाँं श हरी घाश भी दिखाई दे रही है बहुत शारे लोग यहाँ टहललने-घूमने के लिए आते हैं बच्चे भी--

कुछ लिखा दिवाल पे गेट के बगल में एक दुकान है दुकान के ऊपर कुछ लिखा गया है गेट के अंदर भी दुकान दिखाई दे रहे हैं।

यह घना घास का मैदान हैं यहा हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे भी हो सकते हैं सब्जियाँ भी हो सकती हैं बीच में एक झोपड़ी भी है झोपड़ी के चारों तरफ घाश है बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं शो प्लांट भी हो सकते हैं जंगली-कटीले पौधे भी हो सक--

प्रतिमा के ऊपर पगड़ी बांधी गई है। प्रतिमा--